यहां पर एक बु बुक स्टॉल है कुछ फिल्मे के पोस्टर लगे हुए हैं एक आदमी है।

यहां पर एक पिंजरा है पिंजरे में कुछ चिड़िया हैं तोते हैं।

उजला हरा कलर की लाइट है साइड में पेड़ पौधे हैं।

कुछ फूल हैं घंटी है। दिवा लग रहा है।

कुछ यहां पर घास फूस सा है।

यहां पर कुछ गाड़ियां हैं गाड़ियों को धोया जा रहा है।

कुछ पीछे शीशे लगे हुए हैं बाहर गाड़ी दिख रही है।

यहां पर एक दुकान है जिसमें क्रीम पाउडर रखे हुए हैं।

जो ब्रा रखी हुई है।

पर साइड में लिपस्टिक रखी हुई है।

कुछ यहां पर वैसलीन है।

यहां पर एक बिल्डिंग है।

कुछ घास फूस सा है कुछ अंदर डिश लगे हुए हैं ऐसी लगी हुई है।

कुछ टेम्पु खड़े हुए हैं कुछ हैं।

ऊपर कुछ कट्टे पड़े हुए हैं साइकल है रिक्शा है।

यहां पर एक शादी हो रही है बैंक्वेट हॉल है।

कुछ बड़े टायर हैं कुछ छोटे टायर हैं।

यहां पर कुछ लेडिज है।

यहां पर एक बड़ा सा पाइप सा है गोल गोल सा।

यहां पर अस्पताल है पीछे एक नर्स बैठी हुई है एक चेयर है।

कुछ पंखे लग रहे हैं कुछ फायर ब्रिगेड है।

हरे रंग की पत्तियां है।

कुछ पेपेंच रखे हुए हैं कुछ चाबी रखी हुई है।

पीछे बहुत डिब्बे रखे हुए हैं।

दुकान में यहां पर बिस्किट रखे हुए हैं ट्रॉफी है लेमचूस है।

पीछे कुछ सामान रखा हुआ है पैन है कुछ नोट बुक है।

पीछे कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पर एक रेस्टोरेंट --

कुछ लाइटें लगी हुई है कुछ हरा हरा घास है।

कुछ टेबल पड़ी हुई है --

कुछ यहां पर चेयर रखी हुई है।

पीछे दो तीन आदमी खड़े हुए है।

यहां पर एक रेस्टोरेंटस है।

एक आदमी हाथ में बच्चे को ले रहा है।

साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है बीच में एक पिल्ला सो रहा है।

यहां पर एक फाटक है।

यहां पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

पीछे ए_सी लगी हुई है।

शीशे के गेट दिख रहे है लाइट जल रही है पंखे हैं।

यहां पर एक बैंकट हॉल है बैंकट हॉल को सजाया गया है।

ग्राउंड में एक आमदीन खड़ा हुआ है कुछ गमले है कुछ पर्दे है।